इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं जहाँ आप देख सकते है इन सभी लड़कों ने लाल रंग का लाल रंग के कपड़े पेहेने हुए हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हैं। आपको एक ए.टी.एम. नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ए.टी.एम. पर ए.टी.एम. का पोस्टर लगा हुआ है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको एक स्टेज नजर आ रहा है जहां स्टेज पर आपको एक दुल्हन नजर आ रहा है दूल्हे ने शेरवानी पहनी हुई है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं। आपको एक किराने की दुकान नजर आ रही है। जहाँ आप देख सकते हैं एक आदमी चेक्स वाले कलर के शर्ट में खड़ा नजर आ रहा है।

जहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कुर्सी पर आपको दूल्हा दुल्हन और एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको स्टेज पर आर्केस्ट्रा नजर आ रहा है और काफी लोग दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर कुरआन की आयतें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

गुलाब के पौधे हर रंग के गुलाब के नजर आ रहे है जहां आप देख सकते है पौधों में आपको गुलाब आते दिखाई दे रहे हैं एक बच्चा खड़ा दिखाई दे रहा है।

जहां पे आप देख सकते लाइन मे बैठे हुए कुछ बच्चे आ रहे है जो की पेपरों को काट कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे है यहां एक टीचर भी खड़ी है।

इस फोटो में आप देख सकते है आपको एक बहोत बड़ा और खूबसूरत घर बना नजर आ रहा है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं आपको एक स्कूल का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको दीवाल से टिके हुए कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

जो बच्चे हमम पेपर से अपना प्रोजेक्ट पूरा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं इस स्कूल में आप देख सकते हैं लोहे की जाली दिखाई दे रही है।